एक बहोत बड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है नीचे रेत दिखाई दे रही है | आगे बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है पानी के आगे हरियाली दिखाई दे रही है ।

पिंक कलर का कारपेट बिछा हुआ है सीलिंग में लाइट दिखाई दे रही है।

किसी का घर दिखाई दे रहा है बनता हुआ ऊपर संटिंग लगी हुई है नीचे बहोत ही सुंदर हरी हरी घास दिखाई दे रही है ।

की दिखाई दे रही है एक नीले कलर का पट्टा दिखाई दे रहा है बहोत सारी दिख रही हैं।

यहां एक बैंक दिखाई दे रही है| यहाँ एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है दो बाइक खड़ी है| बाइक के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है।

यहाँ एक बाल्टी दिखाई दे रही है एक टूटी हुई पेटी दिखाई दे रही है पीड़ा दिखाई दे रहा है दो।

यह किसी का मकान दिखाई दे रहा है। नीला आसमान दिखाई दे रहा है। बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

पाइप लगे दिखाई दे रहे हैं नीचे टाइल्स दिखाई दे रही है बहोत सुंदर चेक चेक वाली |